यह एक कार वर्कशॉप है इस कार वर्कशॉप पर ऊपर की ओर एक स्विफ्ट कार उठा रखी है।

जिनमें कुछ प्लग भी लगाए हैं और पीछे की ओर ब्लैक दिख रहा है।

बराबर में एक रेड कलर का पर्दा दिखाई दे रहा है।

यह एक मिठाई की दुकान है इस मिठाई की दुकान में एक शीशे का काउंटर रखा हुआ है।

और यहां पर कुछ यात्री चलते हुए नजर आ रहे है।

यह एक शोरूम है इस शोरूम के अंदर बहुत सारी मशीन लाइन से रखी हुई है।

पन्नी का कलर ब्लैक है और उनमें पौधे लगा रखे।

इस कपड़ों के शोरूम के अंदर बहोत सारी फिटिंग हुई है।

इस ठेले पर केले भीं रखे हैं पपीता भी रखा हुआ है।

और पीछे की ओर से भी खिड़की खोल रखी है।

और बहुत ही सुंदर पेंट हो रखा है यहां पे कुछ व्यक्ति चलते हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसने गले में गमछा डाल रखा है वाइट कलर की शर्ट पहन रखी है और तंबाकू रगड़ रहा है।